अ पिछे में बड़े बिल्डिंग हैं जो दिखाई दे रहा हैं आगे एक पत्ता हैं जो लाल रंग का हैं।

टी शर्ट पहने हुए हैं जो वाइट कलर के एक ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ है।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

और नीचे एक गाड़ी दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है।

और जो दरवाजा है वो चॉकलेटी रंग का है।

यहां मुझे एक कार दिखाई दे रहा है।

नेवी ब्लू कलर का है नीचे रोज है जो भूरा कलर का दिखाई दे रहा है।